यहाँ एक जगह है उसके आस पास बहुत सारे पेड पौधे और बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है और यहाँ पर कूछ महल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे जगह है जिसके आस पास बहुत सारे पेड़ पेढ पौधे और बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ खंबे दिखाई दे रहे है।

और यहा बहुत सी सुंदर दिख रहा है और यहा पर कुछ दरवाजे और खिड़कीय दिख रही है।

और यहाँ पर एक महल दिख रहा है। उसका कलर सफ़ेद दिख रहा है और यहाँ नजारा बहुत सुंदर दिख रहा है।